इसमें लेस कुरकुरे वगैरा बाहर में टंगे हुए हैं।

ए_सी लगे हुए हैं स्टार लगे हुए हैं।

ग्रीन कलर का नजर आ रहा है।

और बहुत सारे कुरकुरे रैपर वगैरह फेंके हुए हैं।

बुक की जरूरत ही जरूरत है तो जरूरत है तो वो भारती भवन में आपको मिल जाएंगे।

ऐ_सी भी रूम के अंदर लगे हुए हैं।

सारे रंग बिरंगे बलून भी टंगे हुए--

और बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

और बगल में भी बहोत सारी लेडीज खड़ी है सब--